इधर पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके उप्पर बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है |

उसके बाहर बहोत सारी गाड़िया भी ठेहरी हुई हे और बहोत बड़ा ब्लू कलर की गेट भी दिखाई दे रहा हे और एक पिंक कलर की बिल्डिंग भी नजर आ रही हे और पेड़ भी नजर आ रहा हे |

बहुत खूबसूरत - सा पानी दिखाई दे रहा हैं।

इधर से बहुत सारा पानी बह रहा है उसे देखने के लिये बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है और पेड़ भी नजर आ रहा है|

हिंदी ऑडियो तो रिजेक्ट है .